पर्रर टोटो में एक आदमी ये टोटो ले के जा रहा और ऊपर में --

पे एक प्रोग्राम हो रही जहां हो रहा है। जहां पे डाँस हो रहे यहाँ पे लेडिज़ ब्लू कलर की डाँस कर रही है और पहेन के डाँस कर रही है और --

मैदान है जहाँ बहुत सारे आदमी बैठा हुआ है और उधर देख रहे हैं|

यहाँ परआनंद जिला कार्यालय है |

है पूरा और नीचे काफी मट्टी भी है और दूर में बहो सारे जंगल हैं पहाड़ है।

एक युवक को ऊपर बैठा हुआ है और नीचे एक है बैठा हुआ है लकड़ी का कुछ मशीन है जहा पे कुछ काम हो रहा है और नीच- नीचे में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो काम कर रहा है।

यहाँ पर डांस कॉम्पजिशन हो रहा जहां पर डांस सी किया जा रहा है यहाँ पर तीन लेडिस डांस कर रही है।

यहां पे एक पंडित है जो ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण कर कर दुर्गा पुजा माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हे।

और उसके ऊपर एक बच्चे जो म गंजी वाइट कलर का और नीचे बैंगनी कलर का पैंट पहना हुआ। काफी हरा-भरा लग रहा है।